और ये साइड में देखिये एक एल.ई.डी. टी.वी. है जो की

ये नरेगा बाल उधान यानी उद्यान है।

ये एक बड़ा-सा माला है माले के पीछे एक आदमी भी है।

यहाँ कुछ बस बस है खड़ी-खड़ी हुई है |

और सामने एक ग्राउंड है जो की हरे-भरे घास से भरा हुआ है यह ग्राउंड और बड़ा बिल्डिंग है।

ये बड़ा होटल है होटल का नाम है होटल रुद्रा रेजेंसी।

ये कुर्सी लाल कलर की हैं लाल कलर की हैं सामने एक अट्रेस भी बना हुआ है।